इस चित्र में एक दौड़ने का ट्रैक दिखाई पड़ रहा है जिसके बीच में व्हाइट पट्टी बनी हुई है।

बाएं ओर दो व्यक्ति खड़े बोर्ड को निहारते हुए दिखाई पड़ रहे है।

एक काउंटर बना हुआ है जिसके ऊपर कुछ बॉटल और फोन पे का स्टीकर लगा हुआ है

एक बोर्ड पेज पर पेट्रोल पम्प लिखा हुआ है।

और ये बीच में एक रास्ता गया है।

जहां पे काफी मजदूर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

पीछे प्लास्टिक की तीन चेयरे रखी हुई है।

दो तीन मजदूर काम कर रहे हैं यहां पे कंक्रीट सीमेंट और लकड़ी से घेरा बंदी की गई है।

सामने सफेद रंग की चर्च दिखाई पड़ रही है उसके ऊपर क्रॉस का निशान है।

सामने स्टेज बना हुआ है वह एन_सी_सी कैडेट्स खड़े हैं।

काफी ऊंचे ऊंचे पर भी दिखाई दे रहे हैं बैठने की जगह है वह सीमेंट बनाई गई है।

वहां पे काफी पेड़ पौधे गमलों में भी दिखाई पड़ रहे है जो अंदर भी रखे है और बाहर भी रखे हुए है।

पीछे में एक मकान दिखाई दे रहा है जिसका बाउंड्री सफेद आ पीले रंग का है।

बाहर काफी गाड़िया लगी हुई है स्कूटी लगी हुई है।

अंदर से बाहर एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दे रहा है जिसने सफेद रंग की शर्ट पहन रही है।

इस चित्र में किसी पर्यटक स्थल का खूबसूरत नजारा दिख रहा है।

काफी पेड़ पौधे लताऐं हरे पौधे दिखाई पड़ रहे बहुत खूबसूरत मनमोक नजारा हैं।

जहां काफी कर्मचारी बैठकर के भोजन खा रहे हैं।

इस चित्र में पूजा स्थल का दृश्य है जहां काफी महिलाएं नीचे बैठकर पूजा कर रही है जिन्होंने घुंघट से अपने सर को डाक रखा है।

गन्ने भी दिखाई पड़ रहे हैं।

उसके पीछे कांच की दरवाजे बने हुए हैं वहां भी पी पी कीट पहन के एक व्यक्ति खड़ा है।

फायर एक्टिंग्विशर लगा हुआ है।

दाहिने तरफ दो व्यक्ति पेड़ की तरफ झांकते हुए दिखाई दे रहे हैं।

उसके ऊपर कुछ वस्तुए रखी हुई है बिच वाले में कुछ टायर रखे हुए हैं।

चित्र में झील का खूबसूरत नजारा है जहां एक छोटे से पत्थर पे व्यक्ति हाफ पैंट और टी शर्ट पहन के बैठा हुआ नदी को निहार रहा है।

वहां कुछ व्यक्ति खड़े दिखाई पड़ रहे हैं।

इस चित्र में एक हॉट मार्केट दिख रहा है जो रोड के साइड बने हुए फुटपाथ के ऊपर बना हुआ है।

फोटो के बगल में चौकी लगी हुई है जिसपे सफेद चादर बिछी हुई है।

और बाहर एक व्यक्ति मोबाइल पे बात करता हुआ दिखाई दे रहा है एक सफेद रंग का पहना हुआ व्यक्ति आता हुआ दिखाई दे रहा है कुछ बसेज दिखाई पड़ रही है।

चित्र में एक घनघोर खूबसूरत जंगल का दृश्य है।